बहुत ढे भालू का ढेर लगा हुआ है एक लेबर काम--

अ रेलवे प्लेटफॉर्म है जो घास-घुसाओगी के लिए है और अमम बिजली का खड़ा है बगल मे एक माल गाड़ी खड़ी है जो कुछ गेटे खुली हुई है और खड़ी है।